यहाँ एक गाड़ी दिख रही है जिसने पेड़ को उठाया हुआ है।

यहाँ बहुत से बच्चे हैं बच्चे झूले-झूल रहे हैं कोई चढ़ रहा है इधर से उधर से झूल नीचे आ रहा है एक वृक्ष है।

गाझ के आसपास जंगल झाड़ियां हैं बहुत सी लगी हुई वैन दिख रही है।